यहां गाड़ी का बड़ा शोरूम है।

यहां पे बहुत सारे हरे रंग के झाड़ हैं वह झाड़--

बहुत सारे नारियल के झाड़ है और--